और यहाँ पर बहोत सारी एल_ई_डी लाइट्स पी_ओ_पी भी यहाँ पे किया गया है यहाँ पे बाजू में एक दरवाजा खोला गया है यहाँ --

यह एक घर दिख रहा है यहाँ बाजू में--

बाजू में हरी भरी घास हुई यहाँ पे एक लेडीज जा रही है बैठने के लिए चेयर्स डाले गए यहाँ पे सोफा बिछाए यहाँ पे बड़ा सा फैन --

टीन शड़ मारा गया उपर छत पे आजू-बाजू बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं यहाँ पे बेंचस भी रखे हुए हैं बाजू सा--